इस चित्र में आठ साइकिलें अलग अलग रंग की नई नई रंग की साइकिलें दिखाई दे रही है।

शीशे का दरवाजा है और शटर ब्राउन कलर का है।

यह पिक्चर किसी पार्क की है इसमें हमें बहुत लंबे लंबे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं।

यह चित्र किसी मेले का है जिसमें हमें लगभग बारह से तेरह लोग दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक लाल रंग की बंडल रखी हुई हैं।

इसमें हमें बहोत सारी बिल्डिंगे एवं पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

गाड़ियां भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

यह चित्र किसी पहाड़ का है इस चित्र में हमें बड़े बड़े चट्टान एवं बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

जैसे की नेस्ले की कॉफी मयूरी की मेहंदी जॉर्डन का ब्रश इत्यादि चीजे।

इस बोर्ड में लिखा हुआ है हजारीबाग एक सौ सात किलोमीटर।

इस पिक्चर में हमें कुछ किताबें डोम्स की पेंसिले सेलोटेप्स बोतल वगैरा दिखाई दे रहे हैं।

सोफे के पीछे एक गुलाबी फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ है।

यह चित्र एक नहर का है जिसमें से काफी हद तक पानी गिर रही है।

इस चित्र में हमें दो स्कूटी एक व्यक्ति एवम एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जो की हल्के पिंक कलर का है।

प्रत्येक रेक में कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजे रखी हुई है ।